यहाँ पर कुछ वर्कर्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने एक जेसीबी मशीन है जो की एक गड्ढे से --

अगल बगल में बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं। बा ऊपर में भी एक लाइट लगी हुई है। एक पंखा चलता हुआ देखा जा सकता है।

कुछ यहाँ पे क्रिस्चियन के सिम्बोल पहने हुए एक वक्ति आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा-सा मकान दिखाई दे रहा हैं नीचे बहुत सारी हरी-हरी घासें लगी हुई है।

यहाँ पर एक बड़ा-सा स्कूल देखा जा रहा है जिस पे --

ए ग्रीन कलर अ ब्लू कलर के गेट लगे हुए देखे जा सकते हैं। अगल-बगल में बहुत से पेड़ भी दिखाई दे रहे है।